ऊपर में एक उजले रंग का बल्ब जल रहा है।

और यह उजले रंग का है।

यहां पर अंदर की दीवारें उजले रंग की दिखाई दे रही हैं।

यह एक छठ पर्व करते हुए लोगों का दृश्य है।

यहां पर अंदर में बहोत सारा स्टील का बर्तन रखा हुआ नजर आ रहा है।